ओ बाहर में सवारी की प्रतीक्षा कर रहा है।

जहां पर की बड़े पैमाने पर जूता

और यहां अदभुत नजारे देख पा--

कटिहार जिले में अवस्थित यह चर्चित--

की तस्वीर का तस्वीर किसी पुल पर से लिया गया--

जिसके बगल में छोटे छोटे टीन के घर बन हुए हैं गरीब दुखिया के लिए।